साइड में कुछ पत्ते भी नजर आ रहे हैं जो कि पेड़ की एक शाख दिख रही--

ये एक सड़क की फोटो है उसे सड़क के बीच में यह वाइट कलर की पिलर है जहां पर कुछ ब्राउन कलर का गेट लगा हुआ है।

यहां ऊपर यह ब्रिज जैसा बनाया गया है जहां जिस पे यहां से वहां जाते हैं।